इस इमेज मे हमे मंदिर दिखाये गए है ये मंदिर है जिसमे हमे ये व्हाइट रेड ऐसे कलर दिखाये गए है इसके अलावा कुछ मूर्तिया दिखाई गई है।

यहा पे कुछ लोग भी नजर आ रहे है अह कुछ लेडीज नजर आ रही है एक लेडी है उनके हात मे एक छोटा सा लड़का दिखाया गया है।

इस इमेज मे हमे यहा पे खाना नजर आ रहा है एक प्लेट है ब्लॅक कलर की जिसमे अह यहा पे रेड येल्लो व्हाइट ऐसा कलर का यहा पे खाना दिखाया जा रहा है।

इसके अलावा यहा पे नीचे एक टेबल है जिसपे एक फर्श बिछाया हैं। जिसपे ये प्लेट --

ये कंपनी नजर आ रही है हमे इसमे कुछ टाइल्स लगी हुई है जो व्हाइट कलर की है पीछे यहा पे कुछ चेयर्स लगी हुई है और कुछ बोर्ड लगे हुए है।

और यहा पे मुर्तीया नजर आ रही है अह बॉक्स के उपर काँच लगा हुआ हैं। काँच के अंदर से ये सारे तस्वीर दिख रही है।--

हमे कुछ पेड़ पौधे दिखाये गए है इसके अलावा हमे स्काइ भी दिखाई दे रहा हैं। इस स्काइ मे--

पाया गया है पीछे एक मोर बनाया गया है इस मोर का कलर ग्रीन दिखाया गया हैं। और य--